मुझे एक किलाए दिखा दे रहा है और कुछ लोग दिख रहे है।

कुछ सामान भी दिखाई दे रहा है लाइट भी दिख रही है।

मुझे एक किचन दिखाई दे रहा है किचन में बहोत से बर्तन दिख रहे है।

मुझे एक गार्डन दिखाई दे रहा हैं गार्डन में मुझे फिसल पट्टी दिखाई दे रही हैं।

मुझे सोफे भी दिख रहे हैं और कुछ गाड़ियां भी दिख रही हैं अंदर कुछ सामान भी दिख रहा हैं।

कुछ लोग भी दिख रहे हैं और मुझे पहाड़ भी दिखाई दे रहे हैं।

मुझे एक ऑफिस दिखाई दे रहा है। ऑफिस में मुझे चेयर भी दिख रही है और कुछ--

कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं और कुछ खिड़कियां भी दिख रही हैं।

मुझे एक चैंपियन दिखाई दे रहा है और कुछ गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं।

मुझे भारत गैस सही श्याम सिंग गैस एजेंसी दिखाई दे रही है मुझे एक--

और मुझे टेबल भी दिखाई दे रही है पंखे भी दिखाई दे रहे हैं लो--